जैसा की में देख पा रही हु मुझे यह पर एक दुकान दिखाई दे रहे है जहाँ पर बहोत सरे पैकेटस है यहाँ पर कुछ बिस्कीट के पैकेट भी रखे है।

यहाँ पर एक फ्रिज रखी है जिसका रंग सिलेटी है यहाँ पर पानी की बोटल रखी है जो सफ़ेद और नीले रंग की है।

पता है मेंगो की कई प्रकार की वैरायटी टंगी है यहाँ पर एक मिट मसाला भी है।

यहाँ पर एक नीले रंग की बोटल भी रखी है दो कंघे रखे है आस्मानिवा काले रंग के यहाँ पर एक आदमी बैठा है जिसने पिले रंग की टी शर्ट पहनी --

ये ईमारत ग्रे रंग की है इसमें आयुष्मान भारत हेल्थ एंड --

जैसा की में देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहाँ के दरवाजे के चौखट पे एक पट्टी लगी है जिसका रंग सफ़ेद है।

यह पर एक त्रिसूल लगा है जिसका रंग लाल हैं।

जमीन का रंग थोड़ा स्लिटी और काला है।

छत को बनाने का काम कर रहे है। छत का रंग सिलिटी है।

इस कक्षा में कोई भी नहीं है यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा है जिसका रंग सफ़ेद है।

इसकी छत भी सफ़ेद है तथा इसपे कुछ पिके रंग की लाइट लगी है।

जैसा की मै देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पे एक कमरा दिखता हैं।

यहाँ पर दो ऑटो खड़ी है ऑटो का रंग पीला और काला हैं।

परदे से यहाँ पर फुल लगे है फुल का रंग --

मछली को काट रहा है एक आदमी ने सफेद कमीज तथा दूसरे ने लाल कमीज --

उसने काले रंग की पैंट भी पहन रखी हैं बादलों का रंग सफेद नीला और साफ है।

ये पूल बहुत लंबा है बादल में धुन्‍ध दिखाई दे रही हैं।

दिवार दिखाई दे रहा है जिसका रंग आसमनी है यहाँ पर हरे-हरे बड़े पेड़ है।

यहाँ पर एक जालिया लगी है जिनका रंग काला है।

वुमन की गारमेंट्स भी बिक रही है इस दुकान का नाम मम्मी डेडी है।

छोट- छोटी खिड़कियाँ भी है।

यहाँ पर चाय की दुकान है यहाँ पर एक--

आकृति बनी है जिसका रंग पीला है यहाँ पर एक शटर है जिसका रंग --